एक गाव का मंदिर है जो काफी बड़ा है इसका गेट भी बहुत बड़ा है ओर उसकी मंदिर भी बहुत बड़ी है इसे बहत अच्छे से साफ सुथरा किया जाता है यहाँ पर रोज सुबह छै बजे से लेके सात बजे तक भीड़ रहती है पूजा करने के लिए।